वो उस व्हाइट कलर वाला कॉन्टर का पल्ला लगा हुआ है।

और उसका बिस्कुट के कुछ कार्टूनस आ रहे है। सब रखे हुए हैं।

निचे हल्का लाल कलर का पट्टी दिया गया उसके निचे सेल्स लिखा गया।

यह एक मैरिज हॉल का डेकोरेशन सजाया गया है।

यह एक प्रकार का पार्क दिख रहा है और पार्क में--